यह एक भारतीय स्टेट बैंक है और उसके बगल में एक स्कूटी खड़ी हुई जैसे दिखाई दे रही है।

और उसके बगल में एक दरवाजा है जो शटर खुला हुआ प्रतीत हो रहा है और उसके बगल में बुलेरो सब दिख रहे है।

और एक व्यक्ती हाथ से इशारा कर रहा है और एक व्यक्ती को और एक व्यक्ती खड़ा हुआ है जोकि उसका सिर्फ जूता ही दिख रहा--

यह एक मैदान जैसे दिखाई दे रहा है जिसको चारो तरफ बाउंड्री को घिरे हुए है जोकि नीला कलर में है और कुछ--

एक घर दिखाई दे रहा है और उसके अगल-बगल में पेड़-पोधे बहोत से लगे हुए आसमान भी धुंधला दिखाई दे रहा है।

सवारी कर रहे जैसे दिखाई दे रहे है और नदी के अगल-बगल में पेड़-पोधे भी लगे हुए है जो सुन्दर --

जिसके अगल-बगल में लोहा का कुछ गड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और नीचे फर्श सब पका हुआ है और ऊपर में लाइट सबकी भी बेवस्था की गई है।

जो विभिन्न प्रकार के सामग्री है और नीचे में एक बाल्टी है और टेबल के ऊपर में एक कैची और--

जोकि बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और ऊपर में लाइट सब की भी बेवस्था कि गई है।